जैसा कि हम देख रहे हैं काफी बड़ा स्टेशन है जहां पर दो पटरियाँ हैं जहां पर दो दो तीन तीन और दो ट्रेन एक साथ आ सकती हैं।

अ जैसा कि हम देख रहे हैं सामने का काफी नज़ारा बोहोत अच्छा है। सामने पहाड़ हैं। काफ़ी बड़े-बड़े पहाड़ हैं। ग्रीन कलर के पहाड़ हैं। एक कुछ पेड़ भी है और सामने जो हमारे कॉफ़ी दिख रही है।

अ जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा बुक स्टोर दिख रहा है जहाँ पर काफ़ी सारे बुके भी रखी हुई हैं। यहाँ पर हर तरह की बुक मिलती हैं।

जैसा की हम देख रहें हैं ड्राइ क्लीन की शॉप है जहां पर दो आदमी खड़े हुए है | एक आदमी जो है ग्रीन कलर की शर्ट में जो की वाइट कलर के कपड़े को चेक कर रहा है ताकि इसपे कोई दाग नहीं है सामने बैनर लगा हुआ है |